सीढ़ी पर एक जना बैठा हुआ है तथा तीन जने खड़े हैं एक जना एक्सीलेटर पर बैठा हुआ है तो उसको वहां से हट जाना चाहिए।

इसमे दो नारियां है और एक पुरुष है।

इसका जो डीन है वो मोहनलाल सोनी है जो कि गंगापुर का सोनार है।

बैंक्विट हॉल में शायद शादी समारोह या कोई कार्यक्रम चल रहा है।

पेटीज वैगैरा मिलती है नींबू सोडा सबसे बेस्ट रेहता है पीने के लिए।